ए इस कैफे का दरवाजा कांच का बना हुआ नजर आ रहा है।

एवं बहुत सी फुलझरिया नजर आ रही है और आसमान भी नजर आ रहा है।

जैसे की सफेद बोरियों में रखे हुए सामान नजर आ रहे हैं और कुछ डब्बों में सामान रखे हुए नजर आ--

मंदिर पीछे में उसके एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

हम यहां एक बड़ी सी गेट भी नजर आ रही है।

एवं इसके बाहर में तीन लोग भी नजर आ रहे हैं और दो गाड़ियां भी नजर आ रही --

एक दीवाल भी नजर आ रहा है और एक गेट भी नजर आ रहा है।

एवम यहां की गेट भी नजर आ रहे हैं जो की कांच की बनी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य किसी रोड का दृश्य नजर आ रहा है।

जिसमें कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे--

यह दृश्य किसी फूल का दुकान का दृश्य नजर आ रहा है।